उसके साइड में एक तार जा रहा है ये मेरे घर के पास में भी है।

ये इधर पानी भर रखा है जिससे कि इल्यूसन क्रिएट हो रहा है ये एक मेटल की चीज है।

यहां पर एक बेड है यहां पर कुछ पिक्चर्स भी लगी है एटोटाईजमेंट --

वुडन के यहां पर एक लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ये एक बहुत अच्छे तरीके से शॉप लग रही है।

ये एक तरिके से कुछ शॉप --